यह एक कोचिंग सेन्टर है। यह कोचिंग सेन्टर खान सर का है। यहाँ पर --

यह एक विवाही घर है । यह विवाह घर में --

के नीचे एक समुन्द्र है। यह समुन्द्र में लोग स्नान करके इस मंदिर में पूजा करते हैं और यहाँ पे दूर-दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं ।